एक हरा पपीते का पेड़ है जिसमें तीन पपीते लगे हैं।

मिर्चवाड़ा का चिकित्सालय है जिसके आगे एक छोटा सा गेट लगा है।

खाली प्लेट रखी है और एक प्लेट में नमकीन रखी है।

एक बड़ा खेत है जिसमें टमाटर के पौधे लगे हैं।

पटरी के किनारे कच्ची सड़क जीस पे छोटी छोटी घास जमी हुई है।

एक प्लास्टिक के क्रेट है जिसके पास में लाल और नीले रंग की प्लास्टिक की क्रेट भी रखी है।

रॉयल एनफील्ड का शोरूम है जिसके बाएं नई गाड़ियां खड़ी हुई है काफी।

पीछे एक बड़ी बिल्डिंग है जो की सफेद रंग से पुती हुई है।

इसमें छोटी छोटी रेक्स हैं हर रेक्स में काफी सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

एक लड़की डांस कर रही है जिसने ब्लैक और रेड कलर में ड्रेस पहन रखी है और वाइट कलर के जूते पहन रखे हैं।

गैलरी में काफी लोहे की ब्लैक रंग की कुर्सियां पड़ी हुई है।

अंदर की तरफ सफेद रंग का काउंटर पड़ा है और दो कुर्सियां पड़ी हुई--

उसके पीछे मिट्टी का ढेर लगा है और उसके पीछे बहुत सारे हरे हरे पेड़ लग गए हैं।

गैलरी में एक बेंच रखी हुई है और एंट्रेंस गेट के पास एक डस्टबिन रखा हुआ है।

बस के पीछे साइड में एक लाल रंग का सिलेंडर पड़ा हुआ है।

ये एक बिल्डिंग है जिसमें काम चल रहा हुआ है इसीलिए लोहे की बोहोत सारी पाइपे लगी हुई हैं।

मंदिर का निचला हिस्सा गुलाबी रंग से पुता है जिसके बाहर एक पौधा लगा है।

एक दुकान है जिसके पास में बताशे रखे हुए हैं और एक बड़े बर्तन में मटर रखी है।

जिसके बाहर दो आदमी मेज पे रख के बहुत सारी किताबें बेच रहे हैं।